ये आगे बहुत बड़ा लिखा हुआ है जिसपे फ्यूल पेट्रोल लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे पेट्रोल डीजल यहाँ पे काफी गाड़िया लेके।

नजर आ रहे हैं यहाँं पे कुछ हॉस्पिटल में यहाँं पे एक हॉस्पिटल भी नजर आ रहा है यहाँं पे कुछ बड़े-बड़े बोर्ड भी लगे हुए दिख रहे हैं सड़क के किनारे जो काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँं पे कुछ सिटी रिक्शा वाले भी चलते हुए --

पोस्टर लग रहा है स्टेशन स्टेशन के ऊपर बड़े-बड़े स्टेट लगे हुए हैं जिस पर प्लेटफार्म नंबर भी लिखा हुआ है।